ये एक मैरेज लॉन का पिक्चर है यहां पर शादी हो रही है स्टेज पर सारे बाराती चढ़ चुके हैं।

यहाँ पर दो बस खड़ा हुई हैं एक बस का काम चल रहा है मैकेनिक काम कर रहे हैं।